ऊपर की छत और सामने की दिवार जो कि गुलाबी रंग की है उस पे एक फ़ोटो भी लगा हुआ है तथा अगल बगल --

तथा पहाड़ भी दिखाई दे रहें हैं कुछ खाई भी दिखाई दे रही है और सामने हरे-हरे --

और मेज़ है मेज़ के ऊपर एक बोतल रखी हुई है जिसमें कवर सफ़ेद और ढक्कन --

पोस्टर लगे हैं गोल्ड और सफेद रंग के और अंदर भी बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

टी-शर्ट पहना है ब्लेक रंग की पेंट पहना है और एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है तथा वह --

फोटोएँ लगी है महान हस्तियों की तथा नीचे माता की फ़ोटो लगी है माता भारत।

खुला आसमन है नीचे के साइड एक ब्रिज है और बीचों बीच --

वस्तुएं भी हैं तथा लाइट हैं बड़ी बड़ी खुल आसमान है और बहोत सारे लोग सीढ़ियों से उतरते भी नजर आ रहे हैं।

कुछ गमले रखे हुए हैं और सामने भी एक छोटा चूजा है जिसके पास कटोरी है।

उसका डंडा सफेद रंग का है ऊपर तिरंगा लगा हुआ है तथा अगल बगल बहोत सी लाइटे और घर हैं।

लोहे का एक बहोत बड़ा खंबा है तथा सामने बहोत बड़े बड़े पहाड़ --

एक नाव का डंडा भी दिख रहा है तथा यह --